और स्टैंड बना हुआ हैं जिसमे बहुत सारी मूर्तियाँ रखी है लाफिंग बुद्धा नजर आ रहै है मुझे और स्टैर्स नजर आ रही है पीछे --

यहाँ पर मुझे एक मूर्ति दिखाई दे रही है मूर्ति के समाने कुछ लोग नज़र आ रहै है मूर्ति एक पलंग पर रखी हुई है।

यहाँ पर मुझे एक गेट नजर आ रहा है गेट के अंदर मुझे लोन दिखाई दे रहा है गेट में फूलो का डेकोरेशन लग रहा है।

घर के सामने मुझे गली नजर आ रही है जहाँ पर मुझे फटाका जलता हुआ नजर आ रहा है और घर का मुझे गेट नजर आ रहा है और पेड़ दिखाई दे रहा है छोटे - छोटे --

यहाँ पर मुझे एक स्टेचू नजर आ रहा है स्टेचू के बाजु में मुझे फ्लैग नजर आ रहा है और स्टेचू ने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है।

कुछ छोटे - छोटे पेड़ लगे हुए है और फ्लैग होस्टिंग के लिए एक मुझे पिलर दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर मुझे एक घर नजर आ रहा है घर के अंदर मुझे अशोक के पेड़ नजर आ रहा है और बाउंड्री बनी हुई है और बाउंड्री के सामने मुझे तीन बाइक नजर आ रही है।

और ऊपर इलेक्ट्रिसिटी वायर और खुला आसमान दिखाई दे रहा है देवांश रेसिडेंट्स के बाजु में मुझे एक घर नजर आ रहा है।

पर मुझे एक हॉल नजर आ रहा है हॉल में ऊपर लाइटिंग लगी हुई है और निचे केबिन बने है छोटे छोटे और टेबल नजर आ रही है ब्लैक कलर की --